यहाँ पर मुझे एक पार्क दिखाई दे रहा है जिसमे बहोत सारे खम्बे लगे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पे बहुत सी भीड़ लगी हुई दिखाई दे रहे है इसमें एक --

यहाँ पर मुझे बहोत सारी मूर्तियाँ दिखाई दे रही है बहोत सारी दीवारे बनी हुई दिखाई दे रही है मूर्तियों में कुछ रेड कलर की दिखाई दे रही है आपके गांव भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर मुझे एक बना हुआ दिखाई दे रहा है जो लोकल टाइप के बने हुए दिखाई दे रहे हैइसमे बहुत सारी खिड़कियाँ लगी हुई दिखाई दे रही है--

लाइट लगी दिखाई दे रही है दिखाई दे रही है कुछ बिल्डिंगे बनी दिखाई दे रही है ऐ_सी लगी हुई दिखाई दे रही है।